खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

दूसरी ओर एक व्यक्ति गाड़ी के ऊपर हाथ रखे खड़ा है सामने--

दो व्यक्ति गैराज में बैठे हुए दिख रहे है। एक व्यक्ति सामने खड़ी बाइक को--

सजावट के लिए कुछ सफेद रंग के फूलों के--

इंडिया पोस्ट ए_टी_एम लिखा गया हैै।

और कुछ रंग बिरंगी सजावट की लाइटों से सजावट की गई है।

जिसके चारों तरफ पत्थरों से बनी चट्टानों के कुछ छोटे छोटे--

यहां पर बहुत सारे सफेद रंग के सोफे और कुछ कुर्सियां लगी हुई दिख रही हैं।

इस चित्र में पांच सफेद रंग के तोते बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

पालकी को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है।